वर्कआउट कर रहे है काफी अच्छी सुविधाएं है और इससे हमारे बॉडी के लिए अच्छी फायदेमंद हैं।

इसमें बस स्टैंड है इसमें ढेर सारी बसेस सुविधा होती है यहाँ पे लोग ट्रेवल करते हैं और ये बस स्टैंड काफी प्रचलित है यहाँ बहोत दूर-दूर से लोग आ करके यहाँ पे --

आप इस तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कितना बड़ा बुक स्टोर है यहां पे हर प्रकार की बुक की सुविधाएं हैं जो भी मतलब क्लास --

राज्ये में जो है यहां पे तेल शेविंग होता है जो की आपको दिखाई दे रही होगी पीछे हमारी तस्वीर में कितना --

आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते है ये एक योग स्थल है जहां पे ढेर सारी लोग आकर के यहां पे योगा करते है बच्चे बूढ़े जवान लोग जो भी मतलब की --

यानी की कुछ बच्चे लोग को संदेश दे रहे हैं या फिर कुछ सुना रहे है आप देख सकते है इसका सजावट और काफी उत्साह है इस बच्चे के अंदर और --

हवाई अड्डे के अंदर तस्वीर है और एक इंडियन फ्लैग है जो की और खूबसूरत दिखाती है इस हवाई अड्डे को बगल में देख पा रहे है यहां पे घूमने के लिए लोग भी आए है देखने के लिए जो ये काफी खूबसूरत दिखाती है हवाई अ --